यह छाया स्टेशन है बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में और रोड है बगल में कुछ आदमी चल रहे हैं कुछ ठहरे हैं यहां पर दो बाइक लगी हुई है।

यह एक होटल है। यहाँ पे कुछ कुर्सीयाँ लगी हुई है। कुछ गमले में फूल लगे हुई है।